ये आगे थोड़ा सा चल कर एक बोहत बड़ा पेड़ भी है। यहाँ पर एक छो एक मोटरसाइकिल भी लगी हुई है।

बहुत ही सुंदर एक जगह है जिसमें झरना बह रहा है छोटा सा झरना है।

और इसमें बोहोत ही साफ पानी है और बोहोत ही हरा भरा यह है। इसके आसपास में बोहोत सुंदर-सुंदर पेड़ भी हैं।

यह किसी कॉलेज है या फिर स्कूल की बिल्डिंग है जो की बिल्कुल गोल में है बीच में इसका गैलरी है।

रात का समय है और यह रोड है और यह कोई बीच में चौक है।

ये बेंच रहे हैं और बस से बाहर काफी सारे लोग खड़े भी --